यह एक चित्र है जहां पे पेट्रोल टैंक नजर आ रहा है वहां पर ट्रक भी खड़े हैं और मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं।

यह एक चित्र है जहां पर--

बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं कुर्सियां रखी हुई हैं।

यहां पर बैलून फ्लावर्स वगैरा लगे हुए हैं।

यह एक चित्र है जिसमें एक होटल नजर आ रहा है यहाँ पर दो टेबल लगी हुई हैं कुछ लोग बैठे हैं खाना खा रहे हैं।

ये एक चित्र है जिसमें बहुत लंबी सड़क नज़र आ रही है बहुत सारे खंबे हैं और कुछ गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं।

यह एक चित्र है जहां पर एक मकान नजर आ रहा है और एक सड़क भी दिख रही है हरे-हरे पेड़े लगे हुए हैं।

पेड़े लगे हुए हैं पीस जला हुआ है गमले वगैरह भी रखे हुए--

यह एक चित्र है यहां पर ग्राउंड है।

कुछ घर नजर आ रहे हैं और बहुत सारे पेड़े भी नजर आ रहे हैं।

एक तरफ तीन ट्रक खड़े हैं एक तरफ एक ट्रक खड़ा है।

यह एक चित्र है जिसमें एक घर नजर आ रहा है सा सामने चार बाइकें खड़ी हैं और--